एक स्वीटस शॉप हैं जिसका नाम--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

थार टॉप मॉडल कार ने--

एयरप्लेन है और --

आप देख सकते हैं ये एक बड़ा घर है।

और सुंदर बेकरी है।

की बहोत सुंदर और डिजाइन कैफे हैं।

और यहां पर इसके--

जैसा कि आप देख सकते हैं ये--

देख सकते है ये--